इस चित्र में काली कलर की कुर्सियां लगी हुई हैं और दीवार पे एक वॉल हैंगिंग टंगा हुआ है।

इस पे भगवान की मूर्ति टंगी हुई ह--

और ग्रे कलर का बहुत सारा चीज भी नजर आ रहा है।

और आस पास में बहुत से रंग का कपड़ा भी नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक हाल नजर आ रहा है जिसके सिलिंग में बैलून लगे हुए नजर आ रही है।

और दरवाजे पे एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

यह चित्र एक कपड़े के दुकान का है जहां पर बहुत सारी कपड़े रखे हुई नजर आ रही है।

और एक रेड कलर का कारपेट भी बिछा हुआ नजर आ रहा है और इस चित्र में फूल भी लगे--

और यहां पे एक बहुत बास भी नजर आ रहा है और लाइटे भी लगी हुई नज़र --

ये चित्र में बहोत सारे टोटो नजर आ रहे हैं।

यहां पे एक दीवार भी नजर आ रहा है जिसका रंग स्किन और लाल कलर का है।

और रेड कलर की कारपेट भी बिछे हुए नजर आ रहे हैं।

जिसके बोर्ड पे जमशेदपुर स्कूल आफ आर्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

और बहुत सारे ज्वेलरी भी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में बहोत सारी काले कलर की कुर्सियां भी लगी हुई है।